वह भी पीला कलर का कुर्ता व्हाइट कलर का पैंट पहना हुआ है।

यह एक दवा दुकान का तस्वीर दिख रहा है।

वह आदमी व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यह कोई जगह का तस्वीर दिख रहा है।

और यहां पर चट्टानों में छोटे छोटे घास भी निकले हुए--

यहां पर ऊपर में लाइट लगा हुआ है।

यहां पर छोटे-छोटे चट्टानों भी है।

यह हॉस्पिटल का नाम हेल्थ प्वाइंट हॉस्पिटल है।

यह रेस्टोरेंट बहुत अच्छा से सजाया हुआ है लाइट से।

यहां पर सामने में एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

और यहां पर बहोत सारा कुर्सी और टेबल भी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारा मूर्ति बना हुआ है मूर्ति का कलर है ब्राउन कलर ।

और यहां पर खाली रास्ता भी है।

यह एक पेट्रोल पंप का तस्वीर दिख रहा है।